और मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

वेह लोग मुझे क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने मुझे एक रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है।

सामने मुझे कुछ दुकाने दिखाई दे रही है।

सामने मुझे एक मॉनिटर दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर सामने कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो पर एक सुपर मार्केट दिखाई दे रहा है।

सामने मुझे कुछ बॉटल्स रखी हुई दिख रही हैं।

सामने मुझे कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो पर सामने एक झरना दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं सामने मुझे एक झरना दिखाई दे रहा है।

सामने मुझे एक कैफे दिखाई दे रहा है।

इस फोटो पर मुझे एक घर दिखाई दे रहा है।

सामने मुझे कुछ बकरियां नजर आ रही हैं।

पेड़ों पर पानी देते हुए नजर आ रही है।

सामने मुझे प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है।